इसमे दो लोग जाते हुए दिख रहे है पीछे पेड़-पोधे लगे हुए है।

हरे रंग की घास और पेड़ पौधे लगे हुए है नीला आसमान दिख रहा है।

यह चित्र स्टेशन का है। एक नीली चादर लगी हुई है।

यह एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है नागपूर का दो बड़े-बड़े दरवाजे दिख रहे है रोड दिख रहा है बड़ी-बड़ी--

उसके पास एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है और बड़े-बड़े आसपास पेड़ पौधे पहाड़ भी दिख रहे है।

ऐ कोईसा इंस्टीटूट दिख रहा है रिसर्च जिसका नाम है नेशनल एनवायर्नमेंटल एंजिनिअरिंग रिसर्च इंस्टीटूट --

यह तस्वीर भी एक तलाब की है। सामने कोई वहाँ मस्जिद या मंदिर बना हुआ है। ऊपर बहुत सारे पेड़--

बहुत सारी हरियाली छाई हुई है आसमान नजर आ रहा है। पानी नीला दिख--